बहोत सारे आदमी इखट्टे हो रहे हैं इनको देख रहे हैं कैसे कैसे क्या कर रहे हैं।

यह दो बस जा रही हैं यह बस स्टैंड है।

ये तस्वीर दिख रही है सभी को यहां पे हर जगह तस्वीर तस्वीर लगी हुई है लाइट परबंद है।

अह यहां पेडे पेड़ दिख रहे हैं चारों तरफ आप देख सकते हो बहुत अच्छा नेचर दिख रहा है यहां

ये अतुल मेट्रोलॉजी जी रजी फार्मेस्टन ये श्री बाला जी मेडिकोज दवाइयां का हॉस्पिटल है यहां पे हॉस्पिटल नहीं ये स्टोर है।

बाजार में बहोत से आदमी दिख रहे हैं यहां पे--

यह एक है लिखा हुआ है।

यहां पे लेडिस भी है जेंट्स भी है बच्चे भी है।

कूड़े भी हैं यहां पे पेड़ लगा हुआ है।

यहां पे घर बनाने के काम आ रहे हैं ये सरिए --

पर्दे लग रहे हैं पर्दे ला रखे है यहां पे--

और नीचे पारक सा लगे हुआ है।